प्रयोगशाल्ला है एक सामने की तरफ एक बड़ा स सिलिंडर नजर आ रहा है जो स्टील का है उसमे सामने की तरफ बड़ा सा ग्लास लगा हुआ है।

यहां पर सामने की तरफ एक बड़ी-सी प्लेट रखी हुई है जो व्हाइट कलर की हैं इसमें चाऊमीन्स रखी हुई है।

जिसमे बोहोत सारी गोली दवाईयां रखी हुईं हैं पीछे की तरफ एक ग्रीन कलर का पर्दा लगा हुआ हे नीचे कारपेट रखा हुआ हे शार्प-सामने की तरफ एक टेबल रखा हुआ हे ऊपर की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ हे।

के अंदर बड़े-बड़े पेड़ कुछ छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए हैं सामने एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कार्यालय आयुक्त कर उत्तराखंड मुख्यालय कमिसनर वाणिज्यकर लिखा हुआ है।

ऊपर की तरफ एक स्टो रखा हुआ है जो इलेक्ट्रिक स्टोब है जिससे प्रयोगशाला में पिरयोग किए जात्ता है नीचे की तरप एक ऑरेंज कलर का टेबल रखा हुआ है।

है यहाँ पर बहोत सारे प्लेट के अंदर खस्ते जमे हुए हैं इसमें वाइट कलर की चीज़ डला हुआ है उपर से प्याज है चटनी है कटी हई।

पत्तों के ऊपर छोले-भटूरे डले हुए हैं जिसमें एक स्पून भी रखा हुआ है इसमें दो नींबू कटे हुए रखे हैं इसमें कटी प्याज है दो तली हुई मिर्चिया हैं और गाजर का आचार रखा हुआ है।

इस के अंदर टेन और टोस्ट भी है सामने की तरफ इसमें चटनी रखी हुई है जो ग्रीन कलर की है ये एक ब्लैक कलर के टेबल के ऊपर रखा हुआ है।

कुछ छोटे पेड़ भी हैं कुछ बड़े -बड़े पेड़ नज़र आ रहे हैं सामने के तरफ इसमें क्लाउड नज़र आ रहा है पहाड़ों के ऊपर भी पेड़ लगे हुए हैं ऊपर के तरफ आसमान नजर आ रहा है।

जिसमे चारों तरफ हरी भारी घास भी लगी हुई है सामने की तरफ एक टीन शेड नजर आ रहा है सामने बड़े बड़े प-हाड़ भी हैं।